इसमें कपड़े नजर आ रही है।

इसमें शटर भी लगा हुआ है।

लड़की तरह तरह का पकवान बनाती हुई दिखाई दे रही है।

यह किसी दरवाजे की फोटो दिखाई दे रही है।

हॉस्पिटल का फोटो दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर बच्चों की साइकल भी दिखाई दे रही है।

इसमें तो कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक डी फ्रीज भी दिखाई दे रहा है।

हेली कॉप्टर दिखाई दे रहा है।

यह एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उनके बाहर कूलर लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।